दीवार को यलो कलर से पेंट करके है।

यहां बहुत सारा लोहा रखा हुआ है।

एक आदमी तबला बजा रहा है।

एक आदमी बैठ के बॉडी बनाके रहा है।

उपर सीलिंग में लाइट जला के है।

ये मच्छी ग्रीन कलर का ऊपर में रख के है।

फोटो मे बहोत बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है।

फोटो में बहुत बड़ा जंगल दिखाई दे रहा है।

वहाँ एक बाइक भी रखा हुआ है।

ड्रम का अंदर में मशीन भी रखा हुआ है।

दुकान का ऊपर एक पी एक पस्तर पस्तर लगा के है।

रास्ता में एक लड़की चल रही है।

फोटो में बहुत सारा मछली दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग का ऊपर बहुत सारा बंबू लगा के हैं।

यहां बहुत सारा पुतला दिखाई दे रहा है।

घर को व्हाइट कलर से पेन किया गया है।

रास्ता का किनारे बहोत सारा पेड़ निकाल के है।

फोटो में दुकान का अंदर दिखाई दे रहा है।

दुकान का अंदर में बहुत सारा कार्टून बॉक्स है।

पीछे में आदमी का कपड़ा भी टंगा के हैं।

ये आदमी छफेद कपड़ा जींस पेन के है।

पहाड़ का बिच मे बहोत सारा पेर भी निकल के है।

पिक्चर मे बहुत सारा आदमी जमा हो के है।

अरे यार थोड़ा पैर धो रखा गया है नहीं।

बहुत बड़ा ट्रक दिखाई दे रहा है।

नीचे में व्हाइट कलर का पोस्टर लगा के हैं।

पीछे में बड़ा बड़ा चार पहिया दिखाई दे रहा है।

पर्दा के सामने में बहुत सारा फुल लगा के है।

बोतल का कवर में कुत्ता का पिक्चर दिखाई दे रहा है।

टेबल का ऊपर में एक कंप्यूटर भी है।

यहां पे कागज के ऊपर में लाल रंग का कुछ बनाके है।